जो पूरा स्काई ब्लू कलर का है जिसमे ग्रे ग्रे बादल भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ एक बिल्डिंग बनी हुई हैं जो वाइट ब्लैक वाइट एंड ब्लैक कलर एंड पीच कलर की है सामने घर के सामने एक अ गार्डन टाइप का बना हुआ है जिसमे पेड़ लगे हुए है गार्डन में बोहत सारा कचड़ा भी पड़ा हुआ है।

जो ब्लैक कलर की है। आजु बाजु दीवार बनी हुई है जो पूरी ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है। ऊपर सीट डली हुई है। दो विंडो है एक दरवाजा भी है नी --

पेड़ो में सीढ़ियों में भी बहुत सारे जेंट्स एंड लेडी बैठे हुए हैं ऊपर आसमान है जो पूरा स्काई-ब्लू कलर का है।

लाइट ब्लू कलर की और यहाँ एक झाल भी रखा हुआ है जो व्हाइट कलर का है और बहुत सारे यहाँ कपड़े भी रखे हुए हैं।